वेसे एक ने ब्लू कलर का ब्लेजर पहना है।

और बहुत सारे पेड़-पौधे हैं यहाँ चारों तरफ।

यहाँ पर बड़े-बड़े घास हैं।

नदी मे दो बत्तख दिख रहे है बत्तख --

खिड़की है जिसका झण्डा टंगा हुआ है साम --

घर मे जो कलर है वो व्हाइट कलर का पुता हुआ है नी --

हरा कलर है ऑरेंज कलर की दीवार पर नेम प्लेट लगी हुई है बिजली --

बलून से बलून का कलर पर्पल व्हाइट पिंक है।